येलो कलर का रेड कलर का वाइट कलर का गोला बैलून लगाया हुआ है रिब्बन भी लगाया हुआ है लम्बे वाले भी बैलून लगाए हुए हैं यहाँ पोस्टर पे कोल्ड ड्रिंक का फोटो है बर्गर का फोटो बनाया गया है।